कुछ लोग जूते पहन के आयें हैं कुछ लोग सोक्स पहन के आयें हैं | उपर कि साइड काफ़ी सारी लाइट्स है |

ये एक टोकरी में टोमैटो रखे हैं | इधर काफ़ी सारे टोमैटो कुछ टोमैटो काफ़ी अच्छे हैं कुछ टोमैटो थोड़े से --

यहाँ पर एक घर का लेंटर डल रहा है काफ़ी सारे लेबर यहाँ काम कर रहें हैं नीचे भी रोड -वोड बिछाये हुए हैं।

ये एक गार्डन है यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं पौधे हैं छोटी ग्रास है बड़ी ग्रास है।